यह एक मंडप का नजारा दिख रहा है आजू-बाजू में --

और लाल कलर के दिख रहे हैं आजू-बाजू में एक मिकी माउस भी दिख रहा है बहुत सारे किताबें यहां पर शेल्फ के रूप में दिखाई दे रही है।

यह एक सलून का दुकान है जिस पर दो लोग खुर्ची पर बैठे हुए हैं ।

यह एक नदी का नजारा दिख रहा है एक एक आदमी ।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

और जीम दिख रहा है जीम सफ़ेद कलर का दिवार दिख रहा है आजू बाजू में लाइटिंग दिख रही है बहुत सारी लाइटिंग यहाँ पर की गई है।

एक जिम खाना दिख रहा है आजू-बाजू में बहुत सारे लाल कलर के दीवारें दिख रही है और बहुत सारे मशीनें दिख रही है।

कार्पेट ग्रे कलर का दिख रहा है एक आईना दिख रहा है अ जिसके आईने पर रिफ्लेक्शन आ रहा है जिम का।

यहां पेड़ दिख रहा है आजू-बाजू में जमीन दिख रही है खेती चल रही है पेड़ दिख रहा है पेड़ के ऊपर भी ग्रीनरी दिख रही है।

पेड़ दिख रहा है आजू बाजू में हरियाली दिख रही है यहाँ पर अ पत्थर दिख रहे है पेड़ बहुत ही दिख रहे है हरे भरे हरियाली दिख रही है।

आजूबाजू में पत्थर ही पत्थर दिख रहा है और यहां पर एक दिख रहा है ।

यह एक नदी दिख रही है नदी बह रही है आजू में पेड़ दिख रहे हैं ।

पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं ।

आजूबाजू में लोग दिख रहे हैं एक बाल मतलब उसके सर के ऊपर बाल कम है ।

आजू-बाजू में फ्लावर पॉट दिख रहे हैं.

यहां एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है ।

आजू-बाजू में सफेद कलर के कपड़े पहने हुए लड़के लोग खड़े हैं एक लड़के ने ब्लैक कलर का स्वेटर पहना हुआ है ।

एक लड़की अंदर जाने की कोशिश कर रही है सिढ़िया दिख रही है।

यह बिल्डिंग दिख रही है दो माले की यह बिल्डिंग है पार्किंग में बहुत सारे फोर व्हीलर खड़े हैं।

यह एक जिम खाना दिख रहा है जिस पर जिम के मशीनरी दिख रही है।

व्हाइट कलर का बिल्डिंग दिख रहा है हर एक फ्लोर पर ए_सी का यूनिट दिख रहा है।

नीचे पार्किंग में बहुत सारे गाड़ियां नजर आ रही है।

आकाश दिख रहा है बादल दिख रहे हैं ब्रीज दिख रहा है।